और वहाँ पर ऊपर झंडा लगा हुआ है पेड़ दिख रहे है बाजु में--

यहाँ पर नांव चल रही है पानी भरा हुआ है बहुत सारा --

और यहाँ पर हरे-हरे पत्ते दिख रहे है सब पुरे हरे-हरे बेलरिया टाइप के पत्ते है।

उसके पैर लम्बे - लम्बे और चल रहा है रखकर --

यहाँ पर रिक्शा वाला जा रहा है उसकी नई रिक्शा है।

यहाँ पर नई बहोत सारी जगह दिख रही है पेड़ दिख रहे है छोटे-छोटे बड़े-बड़े--

और वहाँ पर बादल दिख रहा है धुंधला - धुंधला हो रहा है सब --